एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।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

जहां पे देखिएगा ढेर सामा सारा सामान रखा हुआ है।

लाइटें भी दिखाई दे रही है। ओम साई राम।